यह एक कार की एजेंसी है।

और एक गेट भी लग रहा है और इसके बाहर एक कार भी खड़ी है।

और मदरसे में एक ए_सी भी लगी हुई है।

और इनके चेहरे पर कुछ बलर लगा हुआ है।

और उसके पीछे कुछ फूल से बने हुए हैं।

यहां पे कुछ हरी हरी घास लगी हुई है।

और ऊपर कुछ लाइट लगी है और एक पंखा भी लगा हुआ है।

यहां पे एक काउंटर रखा हुआ है।

और इसमें बहोत सारे कपड़े टंग रहे हैं।

और नीचे बहुत सारे बॉक्स भी रखे हुए हैं।

यहां पे एक सोफा रखा हुआ है और इसका गद्दा नीले कलर का है।

और उनमें कुछ छोटी छोटी कुर्सियां भी रखी हुई हैं।

और नीचे टैल पत्थर भी लगे हुए हैं।

और यहां पे कुछ आदमी और कुछ औरतें खड़ी हुई हैं।

और उसपे कुछ लाल कलर हुआ है।

और उनके ऊपर ग्रीन बी लगी हुई है।